और दो व्यक्ति जाते हुए आगे दिखाई दे रहे है एक कुर्सी दिख रही है एक प्लेट दिख रहा है उस पर नाम लिखा हुआ है।

ये सरकारी दफ्तर का नजारा लग रहा है मुझे तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है।

यह बिल्डिंग मुझे तो सरकारी लग रही है क्योंकि इसके आसपास बिल्डिंग की हुई है पेड़ पर भी सरकारी कलर में --

शॉप के आगे एक व्यक्ति खड़ा है नीले शर्ट पहने हुई है दु--

का गेट लगा है वो कांच का दिख रहा है और सामने एक थोड़ा सा व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा है।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

एक गाड़ी दिखाई दे रही उसके पीछे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

उसमें और आसमान में बहुत बादल बादल छाए हुए दिख रहे हैं पेड़ों की छाया भी दिख रही है बहुत ही अच्छा बना --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

एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जीसमें मरीज बेड पर सो रहे हैं ये --

और आसमान में कुछ बादल दिखाई दे रहे है और हरी हरी घास उग लगा --

कुछ गाड़ियां भी खड़ी है और टाक वाला भी लगाए एक बड़ा खंबा दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग ऊपर छोटे छोटे --